ये बहोत बड़ा गार्डन बना हुआ है गार्डन में बच्चे खेलने के लिए आते हैं सभी लोग बैठने के लिए आते हैं गार्डन में।